बहुत सारे आदमी वर्कर लोग रहते हैं जो काम करते हैं यहाँ पर रोजाना कई गाड़ियाँ आते हैं ।

यह चर्च लोग बहुत ही विद्वान लोग होते हैं। यहाँ पर क्रिस्चयन लोग आकर इन फादरो के बातों को सुनते हैं।

पेड़-पौधे लगे हुए है और चर्च के बगल में भी काफी अच्छी पेड़-पौधे लगे गए है यहाँ पर क्रिस्चियन लोग आकर --

नदी काफी गहरी भी है। लोग यहाँ आकर स्नान और सिंचाई भी करते हैं।